साफ़ नीता आसमान है। एवं --

प्लेट पे रखा हुआ है।

यह एक तस्वीर है। जिसमें कि एक ईमारत दिखाई दे रही है। ईमारत पर लिखा है अर्थ फिट क्लब ।

यह एक तस्वीर है जिसमे सामने --

दिखाई दे रहे है एवं रंग-बिरंगे फूल है।

टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखी हैं।

यह एक तस्वीर है जिसमें कि एक पुरुष भगवान् की --

आसपास बहोत सारे हरे पेड़ हैं।